यहाँ पे देख रहे है जो कि एक महजिद है।

इ सैलून में बाल भी कटा रहा है।

ये बैंक जो की बहुत बढ़िया बैंक है इस बैंक में बहुत सारा जाता है।

बैंक बहोत मस्त बैंक लग रहा है।

यहाँ पे देख रहे होंगे की बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आगे सब्जी बेच रहे हैं जोकि बहुत सारा बाइक है जोकि लेने आए हैं।

यहाँ पे देख रहे हैं जो की एक बहुत बड़ा हॉल सेलर दवाई का दुकान है जो की बहुत टॉनिक बहुत प्रकार की दवाई है टॉनिक है सिरप है।

यहाँ पे देख रहे हैं जो की एक ढलाई और पत्रा का एल्वेस्टर का जो की घर --

यहाँ पे देख रहे हैं जो की बहुत प्रकार का मछली बिक्रेता हो रहा है।

और कछुआ जो की बहुत खूबसूरत देखने में लग रहा है और पानी है कुइयां बीच में कुइंयाँ भी है।

अच्छा लग रहा है देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में।

अ ई बहुत बड़ा बिल्डिंग है अ पेंटर तो इसको देखने मे इतना लाजवाब लग रहा है बहुत मस्त पेंट भी किये हैं।

और बहुत और आगे सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगा है मैन गेट भी बहुत खूबसूरत है बहुत अच्छा लग रहा है।